इस इमेज में मुझे बहुत सारे हैं ऑटो और मोटरसाइकिलें दिखाई दे रहीं हैं।

एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है ।

इस इमेज में मुझे एक सी.ए. डब सी. अ डबल आर करियर पी. ए. --

एक बॉन्डरी सी है हल्की-हल्की और इस साइड एक औरत बैठी हुई दिखाई दे रही है बैंच पर |

दो आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे है दो-तीन आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में मुझे बहुत सारे लड़के दिखाई दे रहे हैं जो टेबल पर का --

और पीछे प काटा फॅसा हुआ दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहे हैं रखी हुई पंखा दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में मुझे एक इंडियन बैंक मुजफ्फरपुर शाखा इलाहबाद में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है पोस्टर में अंदर --

और एक इमली का पेड़ लगा हुआ है बड़ा मुझे यहाँ पे हरन हिरन दिखाई दे रहे है ।

और बाजू में एक घर बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसके बाहर कपड़े सूखने डले हुए है।

और उस पर लिखा हुआ है कुमार बुक --

इस इमेज में ना मुझे मुझे सब्जियों के दुकान दिखाई दे रही है और एक किराने की दुकान दिखाई दे रही है ।

पीले कलर की है एक नीले कलर की है एक हेलमेट टँगाया रखा हुआ दिखाई दे रहा है।